किताबे पड़ी हुई नजर आ रही है और काफी किताबे पुस्तके पड़ी है।

और यह सेरो की तस्वीर दिखाय दे रही है और उनके पीछे भी खाफी स्त्रिया नजर आ रही है।

तस्वीर में हमे दिखाई दे रहा हे की यह एक यहा पर खाफी आदमी खड़े हुए नजर आ रहे है।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा हेकी एक व्यक्ति हे जो सेलून की दुकान पर आया हुवा दिखाय इ रहा है और हाथ में काच पकडे हाथ में अपना मोबाइल व् टेबल --

और एक व्यक्ति है जो काफी खराब हो रक्खा है उसके शर्ट भी लगा हुआ नजर आ रहा है।